संतरी गेंदे की फुल नजर आ रहे हैं। यहां पर कुछ फूलों से सजावट भी करी हुई है।

यह पे एक बहोत बड़ा मैदान और एक बहोत बड़ी इमारत नजर आ रही है जोकि सफेद रंग की है इसमें कुछ खाने भी नजर आ रहे--

इस तस्वीर में मुझे दो से तीन बड़े बड़े शीशे नजर आ रहे हैं और कुछ काली कुर्सियां नजर आ रही है।

पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं ऊपर आसमान में थोड़े से बादल भी है।

कुछ नकली मूर्तियां खड़ी हुई हैं जिनको तरह तरह के लहंगे और साड़िया पहनाई गई है।

ट्री लगे हुए हैं आस पास में इमारतें भी बनी हुई है इमरते बहू मंजीली है इमारतो में खिड़कियां भी नज़र आ रही है।

लड़की ने हरे रंग की चूड़ियां पेहनी हुई हैं।

वो टांग कर रखा हुआ है इस दुकान में एक लाल रंग की फ्रिज है जिसका दरवाजा कांच का है।

गाड़ी के अन्दर पर्दे भी लगे हुए है।